और वहाँ पर एक रोड बना हुआ दिखाई दे रहा कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है और वहाँ पर कुछ पार्क सा बना हुआ है हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे --

और यहाँ पर नाइट का समय हैं इसलिए बहुत काला - काला दिखाई दे रहा हैं बरोबर और कुछ दिखाई नही दे रहा हैं।